यहाँ पर एक मिल्क पार्लर है यहाँ नीले और सफेद रंग में है इसकी दीवालों पे बहुत कुछ लिखा गया है।